जहां पे बच्चे लोग खड़े होकर कुछ मीटिंग कर रहे हैं फुटबॉल ग्राउंड --

अंदर का सीन है। वि टू मॉल शायद है ये कोई और यहां पे जैकेट वैकेट कपड़े-वपड़े सब मिलते हैं।